ये एक बहुत बड़ा मोल दिखत रहा है यहाँ पे बहुत सारे पिलर रुन दिख रहै है।

शर्ट पहन रखी है पीछे बहुत सारी गाड़ी मन भी दिखत रही है कुछु पेड़ मन भी दिखत रहै है।

तीन आलमारी बनी हुई दिखत रही है उसपे बहुत सारे क्रीम रखे हुए कुछ स्प्रे रखे हुए दिख रहे है लाइट जलते हुए दिखत रही है।

ये लोहे की जाली बनी हुईं दिखत रही है नीचे घास उगती हुई दिख रही है बादल दिख रहे है जो की सफ़ेद और नीले है।

बिजली का खम्भा दिख रहा है उसपे बिजली के वायर ऑन दिख रहे है नीचे सीमेंट के खम्भे भी बने हुए दिख रहे है पेड़ दिख रहे है।

ये एक हॉल दिखत रहा है इसमें बहुत सारा रिबन उब्बन लगी हुई दिखत रही है दो परदे लगे हुए दिख रहे है बहुत सारे फोटो ऑन भी दिखत --

शैंपू की बॉटले रखी है तेल की बॉटल रखी हुई दिख रही है कुछ पाउच टंगे हुए दिखत रहे है लाल कलर की कुर्सी रखी हुई दिख रही है फ्लैट के बाहर दिख रहे है।

ये एक सफ़ेद कलर की बिल्डिंग दिखत रही है यहाँ पर बहुत सारे कार ऑन खड़े हुए भी दिखत रही है कछु बाइक ऑन दिखत रही है।

बहोत सारे पत्थर ऑन भी दिखत रहे है पा पहाड़ दिख रहा है बहोत सारे पेड़ ऑन दिख रहे है।